और यहां दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे--

यह एक बहैत बड़ा पैलेस दिखाई दे रहा है।

और यहाँ आसमान भीं दिखाई दे रहा हैं।

यह एक चर्च दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक स्टैचू दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम दिखाई दे रहीं हैं जिम में बहोत सारी वर्कआउट मशीनस दिखाई दे रहीं हैं।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

और यहां पर अलग अलग बहोत सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं।

बिजली की तारें दिख रही हैं बिजली का खंबा दिख रहा है।

और पैंट पहन रखी है और यहां आसमान भी दिखाई दे रहा है।